और पास में एक कच्ची सड़क बनी हुई है।

यह एक शादी हॉल की पिक्चर है ।

कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी--

कई सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

घर के अंदर कई सारे लोग--

कुछ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में एक एच_पी का पेट्रोल पंप है।

रोड पर काफी सारा पानी भरा है।

और कुछ कोल्ड्रिंक्स और पानी की बोतलें भी--

जो कि ग्रीन रेड और ब्लू कलर के बड़े से बैलूंस हैं।

ये एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बना है।